इसके बाहर एक टेंट लगा हुआ है और अपने--

इसके पास में कुछ केले के पेड़ जैसी खेती हुई है।

और आप देख सकते हैं नीचे कुछ गमले रखे हैं उनमें पौधा लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर--

उसके नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एस_बी_आई भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

आप देख सकते हैं बहोत सुंदर सुंदर काफी सारी--

या आप देख सकते हैं सामने बहोत सुंदर लाइटिंग है.

एक बहोत सुंदर टी_वी लगी हुई है।

आप देख सकते हैं पीछे मंदिर का नजारा बहोत सुंदर लग रहा है।

ये एक गार्डन है जॉगिंग गार्डन --

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है इसमें--

भरी भरी अच्छी प्यारी सी दूबा लगी हुई है और स्टैंड लाइट लगी हुई हैं।

बाहर देख सकते हैं आप एक लकड़ी का टेबल और कुर्सी पड़ी हुई है।

और ऊपर शटर के ऊपर आप देख सकते हैं एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

जैसे कुछ स्टेशन वगैरह एयरपोर्ट जैसा--

और बाहर ही एक रोड निकला हुआ है जहाँ पे एक मशीन खड़ी हुई है ग्रीन कलर की।